यहां पे अ दुर्गा माता का --

कुरकुरे हैं शैंपू है बोतल है लकड़ी का बॉक्स बना हुआ है।

पीछे एक दीवार है दीवार बहुत पुरानी है बहुत गंदी सी दिख रही है और एक टेबल पे सारे बोतल रखी हुई है।

प्लास्टिक का बना हुआ है टाइल्स बहोत शाइनिंग दे रही है लाइटिंग बहोत अच्छी है।

और बहोत सुंदर दिखाई दे रहा है एक ए_सी लगा हुआ है।

यहां पे पुल है पुल के पास पानी है साइकिल है एक आदमी खड़े हैं।

गंदी सी पेंट निकला हुआ है एक पोस्टर लगा है पोस्टर पे एकता लिखा है एकेडमी है।

गार्डन है सामने एक कंपनी बनी हुई है नीले कलर की कंपनी है।

एल्विस्टर है और लाइटिंग है।

यहां पे एक सिटी कैफे है।

हैप्पी लिखा हुआ है नंबर लिखा हुआ है।

किसी लेडिस ने टी_शर्ट पहनी हुई है। किसी ने सूट पहना हुआ है।

कुछ बच्चे रेस लगा रहे हैं तीन बच्चे हैं दो बच्चों ने पीली टी शर्ट पहनी हुई है एक ने ब्लैक पहना हुआ है।

आस पास जंगल है बहोत सारी घास है।

ये एक गार्डन है गार्डन के अंदर बोहोत सारे फूल है पत्तियां हैं घास हैं।

हरि घास है मिट्टी है पेड़ पौधे--

फुटवियर चप्पल जूते की दुकान हैं।